आसपास पेड़ पौधे मौजूद हैं।

आस पास वॉल हमें नजर आ रहा है।

हमें वाहन नजर आ रहे है।

हमें सीलिंग में फैन दिखाई दे रहे हैं।

द्वारा के सामने कुछ मोटरसाइकल और स्कूटी पार्क किया है।

इस चित्र में हमें कुछ रेलवे ट्रैक्स नजर आ रहे हैं।

एक पेड़ हमें ग्राउंड में नजर आ रहा है।

हमे एक टेंट जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है।

एक वायर जैसा चीज़ हमको नदी में नजर आ रहा है।

इस चित्र में हमें एक मूर्ति दिखाई दे रहा है।

ग्राउंड के आसपास बहुत सारे रेलिंग्स मौजूद हैं।

एक स्टील का पोल हमें रेलिंग के पास दिख रहा है।

ऊपर दिए गए छवि में हमे एक बड़ा सा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

एक बोर्ड हम देख पा रहे हैं।

घर और बिल्डिंग हमें दिखाई दे रहे हैं।

कुछ वायर्स हम दिख पा रहे हैं।

इस चित्र में हमें कुछ रस्ता दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में हमें बिल्डिंग्स नजर आ रहे हैं।

यह छवि में हमें बहोत सारे पौधे दिखाई दे रहे हैं।

कुछ फूल भी पौधों के बीच मौजूद है।